यहा पर चारों तरफ पानी और पत्थर है और यहा पर आजुबाजू बहोत से पहाड़ है।

यह एक योगा क्लास है इस क्लास मे बहुत से लोग मैट पर बैठे हुए है और सभी लोग पालती मारकर हात जोड़े हुए है।

ये एक कक्षा है इस कक्षा मे बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए है।

यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के बहुत से कपड़े अलग-अलग टंगे हुये है कुछ फ़्रॉके तो कुछ जिन्स टंगे हुये है।